कुछ बहुत लोग भी जिम कर रहे हैं।

इस दुकान के गेट के पास एक आदमी खड़ा नजर आ रहा है।

इस दुकान के बाहर एक लाल कलर का बोर्ड बना हुआ है।

इस दृश्य में एक पार्क का चित्र है।

एक पेड़ का पत्ता भी नजर आ रहा है।

इस दुकान में टेबल और चेयर भी लगा हुआ है ।

इस भवन के अंदर एक छोटा सा हाल है जिसमें कुछ चेयर लगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक बहुत बड़ा स्कूल का चित्र है।

इस दृश्य में पूजा करते हुए लोगों का चित्र है।